चारों तरफ से एक ग्राउन्ड है जिसमें बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है कुछ बच्चे चारों तरफ से कुछ बच्चे खड़े हुए है ।

ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमे एक डाक तार घर लिखा हुआ है पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस लिखा हुआ है चारों तरफ से बड़े-बड़े पेड़ है और नीचे छोटे-छोटे पेड़ है एक आदमी है जो की मोटरसाइकिल पे बेठा हुआ हैं। और उसने चश--

गवर्नमेंट व्हीकल लिख सामने एक आदमी है जो व्हाइट कलर की शर्ट पहने है और ग्रे कलर का पैंट पहने हुए है पीछे से और पीछे एक बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है बगल से--

को आदमी है नीचे कुछ मूर्ति बनी हुई है एक भगवान की मूर्ति एक माता की मूर्ति लग रही है पीछे सफेद कलर की दीवाल है और उसमे शटर लगी हुई है सफेद कलर--

सामने एक बड़ा- सा गार्डन है जिसमें कृत अ कृति योगा लिखा हुआ है कृति इंटरनेशनल एजुकेशन योगा योगा स्टेशन लिखा हुआ हैं।

चारों तरफ एक बार सामने से एक बड़ी -सी लाइन लगी है अ-लड़ आदमियों की और पीछे चारो तरफ से बड़े-बड़े खंबे लगे हुए उनमें कुछ लाइटिंग लगी हुई है बगल--

-- से एक रेड कलर की बस रखी हुई है उसके बगल से एक टिन छपी हुई है रेड कलर के सामने एक आदमी है जोकि एक मु-अ ऊपर मुँह पर एक वॉलेट लगा हैं।

ब्लू कलर का एक डिवाइडर है जोकी व्हाइट और सफेद कलर का डिवाइडर नीचे मिट्टी डाली हुई है फर्श--

कुछ लिखा हुआ है पीछे इसमे से लाइटिंग हो रखी है और मुह पे मास्क लगाए हुए एक नीले कलर की शर्ट पहने हुए आदमी है जो की कुछ टेबलो पे बैठे हुए बच्चे है।

बड़ा सा गेट है जिसपे ब्लू कलर से व्हाइट कलर से ऐपोर्ट और पीछे बड़े बड़े पेड़ है।